टेबल कुर्सी है दिखने में मस्त लग रहा है बोर्ड लगा हुआ है।

रखा हुआ है क्च्रनी है रोड गया है कचरा फेंका हुआ है पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है एक आदमी है।

पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे उगे हुए हैं घास भी उगे हैं एक खजूर का पेड़ है ।